और हर एक रैक में कुछ ना कुछ रखा हुआ है।

और पाइनएप्पल कुछ एक बाउल में कुछ लगाया हुआ है पिंक कलर के।

बहोत सारे टी शर्टस लगाया गया है ब्ल्यू कलर का टी शर्ट है।

अ और पर्पल है ब्ल्यू है नेवी ब्ल्यू --

और इंग्लिश में अंदर लिखा हुआ है थाली करके।

और जो काउंटर है वो ब्लू कलर का --

और साइड में है वो और बीच में जो है डायमंड्स का झूमर है।

और साइड में व्हाइट कलर का कुछ डिजाइन डिजाइन का बनाया हुआ है और नीचे जो है ब्लैंकेट और रेड --

और बहोत लोग देख रहे उनको की और खड़े होके।

अ जहां पे पूरा पानी बह रहा है और--

माउंटेंस दिखाई दे रहे हैं माउंटेन के ऊपर का ये फोटो लिया है बीच बीच में रस्ता दिखाई दे रहा है।

वह एक हाथ पीछे रखे है और एक साइड में एक अंकल ले रहा है।

जहां पे कंस्ट्रक्शन चालू है सिर्फ अभी बाहर का बनाया हुआ है।

फाउंटेन है और एक बुद्धा का स्टेच्यू लगाया हुआ है।

यहां पे एक अंकल जो है सर पे टोकरी रख के--

कुछ ऊपर समान लेकर जा रहे और गन्ने का रस गन्ने का डंडा भी दिख रहा है गन्ना--

साइड में एक स्टील का बकेट दिख रहा है और तीन आंटी लोग जो है साड़ी पहने हुए हैं।

और एक छोटा लड़का जो है एक लड़के को उपर गोद में उठाया है।

और सामने एक बिल्डिंग है उसका जो ग्लास है वो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे रास्ते पे और--

यहां पे ग्राउंड पे बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं।

ये एक घर दिखाई दे रहा है एकदम पुराने जमाने जैसे।

और आजू बाजू बहुत सारे गार्डन दिखाई दे रहे हैं।

और पॉट पे छोटे छोटे फ्लावर के अ प्लांट किया हुआ है एक साइड में डस्टबिन दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का और--

तो फिर ये इंग्लिश में और गुजराती में लिखा हुवा हैं।

ये तुलसी बेकरी करके ओपन हुआ शायद और जो --

और उसके साइड में भी है और बाजू में जाली है नीचे--

और ग्रे कलर और वाइट कलर का पेंटिंग किया हुआ है सेम सेम और उसके सामने--

और उन्होंने कोट पहना हुआ है और टेबल पे ल अ डिश है और चेयर पे वो लोग बैठे हुए हैं और --

और व्हाइट कलर का टाइल्स लगाया हुआ है और एक रोड दिखाई दे रहा है और बहोत सारा--

और बीच में एक ऐसा सर्कल टाइप बना है एकदम ऊपर।

जहां पे ऐसे बीच-बीच में लाइट का ऐसे लग रहा है।

और साइड में एक पटरे का कुछ शेड दिखाई दे रहा है।

जो हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही है और बीच बीच में पानी दिखाई दे रहा है।

और साइड में पीकॉक जैसे डेकोरेशन के लिए है वाइट कलर का --

और यहां पे जो टाइल्स है वो वाइट कलर के --

ये एक यामाहा का अ शोरूम दिखाई दे रहा है।

और ऊपर कॉन्टैक्ट मी करके पर्पल कलर में लिखा हुआ है और नंबर भी दिया हुआ है।

और एक उस तरफ एक बैग लेकर एक अंकल खड़े हैं।